यहां पर एक रूम है।

यहां पर टेबल पर एक पानी की बोतल रखी है डॉट फोन रखा हुआ है।

और कुछ लड़के बैठे हैं यहां पर एक लड़के महरूँ कलर की शर्ट पहन रखी है।

यहां पर दो चेयर रखी हुई है।

यहां पर बिग बाजार है जिसके बाहर एक रिक्शा खड़ा हुआ है यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लैक कलर की वुडी पहन रखी है।

कुछ बाइक और साइकिल खड़ी हुई है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है जहां पर काफी सारे टेबल और चेयर डली हुई हैं।

केले रखे हुए हैं सेव रखे हैं यहां पे एक लड़का खड़ा है।

यहां पर एक ब्लू ब्लैक कलर की बाइक खड़ी है।